एक पर बाह्य विभाग जैसा कुछ लिखा है और ऊपर एक बोर्ड भी लगा है।

एक पर लाल तथा दूसरे पर पिला ओढ़ना रखा है।

सामने हीं दो खिड़कियां दिखाई देती हैं जिन पर पीले तथा सफेद रंग का पर्दा है।

बगल में एक और पैंपलेट है जिस पर कट्स एंड कर्व्स लिखा है।

दाई तरफ सीधा रास्ता है दूर नीला लाइट दिख रहा है।

इसमें बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

स्लैब पर इंडक्शन चूल्हा ब्रेड टोस्टर और गैस चूल्हा है।

तस्वीर मे तीन जगह बड़ी बड़ी अक्षरों में जी आर ए वी आई टी वाई लिखा है।

दूर पीछे दो बड़े खंभों में लाइट्स लगी है आसमान का रंग पूरा नीला है।

के आगे एक बल्ब लटकाया हुआ है जो जल रहा है।

साथ ही दो बोर्ड भी लगे हैं दाई तरफ कुछ खेल की मशीन रखी है और एक आंटी भी है।

यह तस्वीर एक बढ़ई के दुकान की लग रही है।

तस्वीर किसी स्ट्रीट फूड की जगह जैसी दिख रही है।

इसपर एक चुन्नी बांधा गया है।

जो ताजमहल की तरह दिखाई देता है।

कुछ वर्ग जैसी आकृति है जिसमें लाल रंग भरा गया है।

इस पर एक बोर्ड भी लगा है।